ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे कई सारे टेबल और चेयर रखे हुए है इनका कलर ऑरेंज है और यहाँ पर पॉट रखे हुए है गमले रखे हुए है फैन ए_सी लगी हुई है पोस्टर लगी हुई है बैलून्स लगे हुए है वाइट एंड रेड कलर के डेकोरेशन है निचे टाइल्स लगे है।

ऊपर एक घर बना हुआ वो भी वाइट एंड रेड कलर का है ऊपर पोस्टर लगा हुआ है

ये एक रेलवे स्टेशन है पहले यहाँ कुछ लिखा हुआ इधर और बोर्ड लगा हुआ है इसके बगल में कुछ लोग बैठे हुए हैंगे चेयर बनी हुई है और काफी सारे पेड़ हैंगे लाइटें सब में लगे हुए हैंगे यहाँ पर रेलवे की पटरी हैंगी उसके बीच में काफी सारे पत्थर हैंगे दो प्लेटफार्म हैंगे यहाँ पर--

ब बॉटल बनाए रखे हुए है। ऊपर इस अ अलमारी में काफी सारे रैक बनी हुई है। जिसमे सभी रैको में समान रखा है। साइड में भी समान रखा हुआ है।

उसमें बहुत सारे डिब्बे छोटे-बड़े रखे हुए है। उसमें सामान रखा हुआ है। साइड में एक बोरी रखी हुई है। उसमें भी सामान है।